और ये कहीं बांध पर पानी पे खड़े हैं जो कि देखने में--

इस गार्डन के अंदर दो से चार लोग भी नजर आ रहे हैं एक--

व्यवस्था की गई है फिलहाल यह रेस्टोरेंट पूरी तरीके से खाली नजर आ रहा है।

और पास में ही एक पॉपकोन बनाने की मशीन भी रखी गई है।

और अलग अलग कंपनी की और अलग अलग डिजाइन की है।

यह फिर कुछ हीरा बनाते हुए नजर आ रही है जिसको धो कर देख रही है कि वो बना या नहीं।